अ हाथी बना दिया गया हैं जो की बीचो-बिच में कुछ उसके आईट साइड में कुछ हरी-हरी--

एक पेट्रोल पंप दिख रहा है और उसमे एक मोटर साइकिलें पेट्रोल ले-लेते हुए नजर आ रहे है और एक सफेद कलर कार खड़ी हुई है और आइट साइड --

तीन मंजिल बिल्डिंग दिख रही है साइड में भी और एक चैनल गेट वाला दिख रहा है जिसमें --